उसके ऊपर एक बोर्ड लगा है नीले रंग का उसपे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है गेट के दोनों तरफ पिलर पर गुलाबी रंग किया हुआ है भवन परिसर में एक बङा सा वृक्ष लग रहा है।

इस चित्र में हमें एक मैदान दिख रहा है उस मैदान के पीछे हमें कुछ दुकानें बनी हुई दिख रही हैं और यहां पे बहुत सारी बाइक खड़ी हुई हैं।

कुछ पौधे हमें लगे हुए दिख रहे हैं और यह तालाब के बीच में हमे पत्थर दिख रहे हैं सामने हमें पहाड़ दिख रहा है वहां कुछ वृक्ष लगे हुए हैं।

टेबल के पास एक नारियल खाली पड़ा हुआ है टेबल के उपर एक नीले रंग का कोल्ड ड्रिंक का बॉक्स रखा हुआ है और एक मशीन यहां पर रखी हुई है मशीन के पास एक बॉक्स लगा हुआ है उसके ऊपर एक कपड़ा बना हुआ है चारों तरफ और नीचे नील पीछे नीले कलर की दरवाजा है।

और ऊपर रैलिंग लगी हुई है रैलिंग पर एक झण्डा लगा है ऊपर सफेद कलर का बोर्ड लगा हुआ है और नीचे रोशन-दार बने है नीचे दीवार पर सिमेन्ट की उसपे पीले रंग की एक बोर्ड है।

यहाँ हमे कुछ पौधे लगे हुए दिख रहे है कुछ पिले हरे और लाल पौधे लगे हुए है और यहाँ पर लोहे की जाली से डिज़ाइन बना हुआ है।